ये तस्वीर एक रोहतक के फैमिली मार्ट की है।

इसको बहोत सारे बैलून से सजाया गया हैं यहां पर कुछ सीढ़ियां भी--

बहुत सारे मकान भी यहां पर हैं।

गार्डन में तीन चार बेंच डले हुए हैं।

और लाइट जल रही हैं।

समुद्र में एक बड़ा पत्थर--

ये तस्वीर कुछ लड़कों की है ये लड़के सेल्फी ले रहे हैं।

ये तस्वीर एक मंदिर की है।

यहां औरतें और पुरुष दोनों हैं।

मकान पर हर पेंट करा गया--

पहने हुए हैं इन्होंने सर पर।

ये फोटो बहुत ही अलग है।

यहां पर दो लाल कुर्सियां भी हैं।

ये तस्वीर बहोत बड़ी बिल्डिंग --

पर स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बाइस लिखा है।

ये तस्वीर एक मकान की है।

जहां कई बिजली के तार भी --